उनके पीछे बहुत बड़ा बिल्डिंग है। जो कि दो है उसमें बहुत सारी खिड़कियां है। और घर की अकल बगल कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे जो की हरे भरे हैं।

एक सड़क है जिसमें बहुत सारी कार खड़ी हुई है एक बाइक वाला है और एक स्कूटी वाला है लोग के सामने एक ट्रैफिक की लाइट लगी हुई है।

‍‌‌ बहुत बड़ा हॉल है जिसमे बहुत सारे कुर्सियां लगी है जो की सभी स्टील के कुर्सियां हे उन्मे कुछ लोग बैठे हुए हैऔर कुछ लोग बा-- बगल मे एक दुकान हैजिसमे कपडे बिक रहे है |

सामने कुछ आदमी लोग है जो की सभी कुछ वाद्य यंत्र बज रहे है सभी सफेद कलर के नीचे कपड़े पहने हुए है।

सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें नीचे हरे कलर की मेट लगी हुई है सामने एक औरत जो की साड़ी पहनी हुई है और हाथों में फुटबॉल रखी है सामने एक आदमी है जो की शर्ट पैंट पहना हुआ है।

एक मंडप है जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन बैठी हुई है उन दोनों की शादी हो रही है पीछे बहुत सारी औरतें जो कि आपस में बैठे हुए और आपस में बात कर रहे है।